और यह पानी की धारा है जो बहुत ज्यादा ही तेज है जिसके कारण वृक्ष तेजी से बढ़ रहे हैं यहां पर दिख रहा है आपको और ये मिट्टी भी बच रहा है काफ़ी उपजाऊ लग रही है।

इ काफी सुंदरता लगता सुंदर पिक्चर आएगा जो की नही आयेगा जो की--

घुंम रहा है घुंम रहा है घुंम रहा है घुंम रहा है घुंम रहा है घुंम रहा है घुंम रहा है घुंम रहा है घुंम रहा है घुंम रहा है --

हर कलर का पिक्चर है यहां पर एक नीला कलर का है और वो घूम रहा है घूम --

या फिर नदी है या फिर कुछ है यहां पर नीला आसमान साफ आसमान--